इस पिक्चर में सब्जी मंडी दिखाई गई है जिसमें सब्जियाँ हैं लाल मिर्ची है हरी मिर्ची है गोभी है आलू है।

एक रेड कलर का टेबल है ब्राउन कलर की बोड़ी में मिर्चियाँ है --

उसमें येलो कलर का कुछ बना हुआ है पीछे की तरफ बहुत पुराने हाउस बने बहुत सारे पेड़ है बड़े-बड़े --

डिस्टेंपर भी है टाइल्स भी पड़ी है चेयर भी है --

ये एक स्कूल की बिल्डिंग है उसमें खूब सारी खिड़कियां हैं।

नीचे ग्रीन कलर का कारपेट है एक आदमी बैठा हुआ है।

ब्लू कलर के साइड में बाउंड्री बनी हुई है एक बेंच है।

कांच की डोर है बाहर एक हाउस है जिसके बाहर एक रीक्षा खड़ा है।

काम चल रहा है वर्कर है जिसने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी हुई है एक अंब्रेला है जिसके नीचे दो जेन्स खड़े हैं।

एक लड़का सीट पर बैठा हुआ है आसमान है साम का समय है।

एक लड़का बैठा हुआ है प्लास्टिक का टेबल है ब्लू कलर का दरवाजा है एक ब्लू टेबल --

एक बड़ा गेट है मंदिर के ऊपर भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है लेफ्ट की तरफ एक पेड़ दिखाया गया है आसमान है --

एक फ्लैक है रेड कलर का लगा हुआ --

शॉप के अंदर एक आदमी चेयर पर बैठा है और कुछ काम कर रहा है एक आदमी बाहर खरा है ब्लैक कलर की शर्ट पेह --

दीवार का कलर ग्रीन है नीचे कारपेट रेड है।

इस पिक्चर में दुकान दिखाई गई है जिसमें बहोत सारा सामान है।

ग्रीन है लकड़ी से कुछ बना हुआ है पीछे बहुत बड़ा एक दरवाजा है --

चेयर पे बैठे हैं दो आदमी कुछ काम कर रहे हैं दीवारें धाबे की ऑरेंज कलर की है लाइटी हैं।

छोटा सा मंदिर है जहाँ लाइट जल रही है --